यह तस्वीर एक मॉल के अंदर से लिया हुआ है।

इस मॉल के फ्लोर पर सभी टाइल्स बिछाया हुआ है।

इस मॉल के अंदर बहोत सारा सेल्स नजर आ रहा है।

सारे सेल्स पर अलग अलग सामान रखा हुआ है।

आगे में मुझे एक औरत बैठा हुआ दिखाई दे रहा--

तस्वीर में मुझे बड़ा सा एक घर दिखाई दे रहा है।

इस घर में टोयोटा सर्विस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारे चेयर ब्लू कलर के हैं।

एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है और एक खड़ा है।

यह तस्वीर में मुझे सड़क का कुछ हीस्से ही दिखाई दे रहा है।

यहां बाइक भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां काउंटर जगह भी दिखाई दे रहा है।

कमरे के अंदर मुझे बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आदमी ने सफेद रंग का टी शर्ट और ब्ल्यू जींस पहना है।

पीछे का दीवार सफेद है।

टेबल पर कंप्यूटर सेफ फाइल्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा सिटी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बच्चे पढ़ के बैठा हुआ है।

सड़क जो है पूरे सीमेंट का है।

मुझे सामने दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

जिस साइड पर बहुत सारे जूते भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान पर बहुत छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ी का रंग लाल है एक गाड़ी का रंग पि नीला है।

सामने में मुझे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

घर के ऊपर उठने के लिए सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

ब्लर जो है सफेद रंग का है।

रस्ते के सामने मुझे बहुत छोटे छोटे घास दिखाई दे रहा है।

फेंसिंग के अंदर बहुत सारे बंबू या पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने में कुछ कपड़े भी फोल्ड करके दिखाई दे रहा है।

आगे मैं मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

फैक्ट्री के फ्लोर पर टाइल्स बिछाया हुआ है।

यहां मुझे बहुत बड़ा सा जगह पर बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

नीचे पर क्रीम कलर की टाइल्स बिछाया हुआ है।